और यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है जो की अपनी फोटो ले रहा है। शायद ये कहीं घूमने गया है जहाँ पे ये बैठ कर अपनी --

छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और ये जो चर्च है बोहोत ही बड़ा हमको दिखाई दे रहा है।

कि जो तस्वीर हमारे सामने है ये एक गाँव की तस्वीर लग रही है क्यूंकि इसमें एक गाय खड़ी है।

ये जो तस्वीर हमारे सामने में है। ये एक पत्थर है पत्थर के --

का जो पीछे का रहता है वो खड़ा है और इसके आ सामने में दो तरफ खेत है। बीच से कच्ची सड़क गयी हुई है।

लोग डीजल भरवाने के लिए अपनी-अपनी कार लेके खड़े हैं।

नरसिंभ महाराज हैं जो बैठे हुए हैं और उनके अ पैर पे हिरणाकश्यप हैं जो --